और ये रेड कलर बोहोत ही अच्छा दिख रहा है।

एक बच्चों के आगे एक बहुत प्यारी सी एक बेंच रखी हुई है जिसका कलर रेड है।

ये बोहोत ही अच्छी स्टेडी कर रही हैं। य दीवार के कलर आद आदि दीवार का कलर रेड है। बच्चे बोहोत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं।

बच्चे बोहोत अच्छे से स्टेडी कर रहे हैं। ये थर्मस बोहोत प्यारा लग रहा है। अ स्कूल की बेंचे लोहे की हैं।

सभी योगा योगट सभी योगा बहुत अच्छे से कर रहे हैं पीछे वाइट कलर की एक दीवार है जो बहुत ही अच्छी लग रही है।

जो यहां पर एक मंदिर के ऊपर एक आदमी बैठ एक मूर्ति बैठी है जो बोहोती अच्छी लग रही है। मूर्ति का कलर येलो है जो बोहोती अच्छा लग रहा --

ये बोहोती अच्छा लग रहा है जिसमें से ब्लू अ ब्लू गेट एयरपोर्ट तो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लू कलर का है। यह गेट बोहोत प्यारा लग रहा है। यहां पर बोहोत ज्यादा आदमी और लेडीज़ खडी हुई हैं।